हिरन दिखाई दे रही है जो काफी सुन्दर और अच्छी है| हिरन बहोत सारे हैं जो काफी शानदार और बेहतरीन --

एक फैक्ट्री है जिसके अंदर कुछ स्टील की बड़ी-बड़ी सामान बनाई जा रही है।